यह बहुत ही मनमोहक दृश्य दिखाई दे रहा है और यह सूर्योदय का --

यह हरा-भरा जंगल और पेड़ बहुत ही अच्छे हैं इसमें कुछ लिखा है कृपया यहाँ पर कूड़ा ना फैलाएं यहाँ पे एक बोर्ड लिखा है और यहाँ के लोगों को देखकर मैं समझ गया यहाँ पे कूड़ा फैलाने के बारे में--

इस भाई ने यहां पे इलेक्ट्रिक व्हीकल की दुकान खोल रखी है। जहां पर बहोत सारी ई रिक्शा है इलेक्ट्रिक वाले और शायद यहां पे इस भाई ने नई दुकान खोली है क्योंकि यहां पे डेकोरेट का बहोत ही अच्छा सामान रखता है बलून है और बहोत सारे फूल मालाएं के साथ हमने इ रिक्शा साथ और दुकान को सजाया गया है।

यहां पे पिन कोड ऐट वन फोर वन वन टू है और --

सर्दियों का मजा लेते हुए अंकल यहां पर मफलर पहनते हुए और कोई लोग रिक्शा का वेट करते हुए यूनियन बैंक तो यहां पे बंद हमें देखने को मिल रहा और लक्ष्मी होटल यहां पे --